चार पांच वो सीसा लगा हुआ है।

यह एक नदी है और नदी में काफी बड़ा पुल है और काफी पानी है नदी में।

काफी अच्छी तरीके से मूर्ति के पीछे सजाया गया है और स्टेज बनाया गया मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में।

यहां कोई चीज का उद्घाटन है

उसके बगल मे ही एक दो छोटे छोटे पेड पौधे है जो कि काफी अच्छे लग रहे है देखने मे--

और उसके बगल में ही एक वाइट कलर का घर है।

बहुत सारी फोटो भी लगे हुए हैं दीवाल पे।

उसी कार्यलाय के पीछे भी पेड़ पौधे लगे हुए।

और ये नीचे में टाइल्स भी लगी हुई हैं।

यह एक बिजली प्लांट है और बिजली प्लांट के साइड से एक रोड गुजरी ह--

हर बिल्डिंग में बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर किए गए हैं और इस बगल में ही एक गार्डन है जोकि गार्डन में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और एक --

यह एक शीशे में पैक हुई मूर्तियां हैं जो कि काफ़ी अच्छे से सब बैठे हुए हैं।